यहां हम देख पा रहे हैं हमे यहाँ पे एक सोफा दिखाई दे रहा है सोफा आप देख सकते हैं काफी प्यार और सुंदर है लकड़ी इसकी काफी अच्छी --

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं रोबोट टाइप का सा यहां पे कंप्यूटर खड़ा किया गया है उसके पास एक बच्ची खड़ी है।

बिल्डिंग एक जैसी है तीन बिल्डिंग है यहां पे आप खुद देख सकते हैं उसके बाहर कुछ यहां पर फोर व्हीलर खड़ी है जो हम यहां देख पा रहे है।

दीदी बैठी हैं यहां पे जिनका चेहरा छुपाया गया है ऑफिस काफी साफ सुथरा है देख सकते हैं।

जैसा की हम देख पा रहे है यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया है उसके दोनों साइड आप देख सकते हैं गार्डन है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे बहुत बड़ी बेकरी है बेकरी में आप देख सकते हैं अंदर कुछ केक कुछ मिठाई सब कुछ दिखाई दे रहा है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे आप देख सकते है एक बहुत बड़ा यहां पे ट्रक खड़ा है उस पर भारत --

पेड़ भी यहां पे बड़े बड़े सामने की और हम देख सकते बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके बाहर कुछ फोर व्हीलर खड़ी हैं देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे एक स्मार्ट बाजार है बाजार में आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी का काफी सारा सामान है।

और यहां आप देख सकते है छोटी सी बेंच है। इसमें कुछ सामान रखा गया है। यहां एक कुर्सी पड़ी है। देख सकते है यहां पे।

जैसा कि हम देख पा रे है यहां पे कार मैचिंग लिखा हुआ है देख सकते है बहोत ही प्यारी जगह है ये ऑटो प्वाइंट भी है यहां पे।

यहां पे अलग अलग एक्सरसाइज मशीन हमें दिखाई दे रही है और यहाँ फोटोस भी लगी हुई है देख सकते हैं आप --

वर्धमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये एक घर है घर आप देख सकते हैं काफी प्यारा है।

इसके बाहर आप देख सकते है कच्चा पक्का सा हो रहा है और यहां पे एक बड़ा सारा पेड़ है नीचे छोटी छोटी सी घास और पौधे आए हुए है।

पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं काफी साफ सुथरा है बाइक वाला वहां खड़ा है आसपास इधर ऑटो है काफी सारी पब्लिक हम देख पा रहे हैं इस साइड ।